तो ये सब बहुत ही खुशी हो रहे हैं।

बापू जी का एक बोर्ड लगा हुआ है ऊपर में और यहाँ पर लिखा है नो माक --

यहाँ पे पुराने से पुराना सामान रखा जाता है और इस सामान को कभी बेचा भी जाता है जोकि काफी अच्छा प्राइस मिलता है इसको --

शादी का घर है। जहाँ पे सजावट चल रही है। अभी तो --

बेडरूम में और बेडरूम में आप देख सकते हैं।

तो सूर्य डूबते हुए जा रहा है तो ऐसा लग रहा है कि बीच आसमान में घुसा पड़ा है।